यह एक स्टूडियो है यहाँ लोग फोटो खिचाने आते है एक परिवार के दो आदमी आए हुए है एक लेडीज एक जेंट्स फोटो खीचा रहे है ।

यह एक पहाड़ है इस पहाड़ से झरना बहती है।

यह मछली है। यह मछली बहुत ही अच्छा है। यह मछली खाने में बहुत अच्छी लगते हैं। ये यह मछली बहुत ही कीमत पर बिकती है। यह बहुत अच्छा मछली है।

यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है। एक स्टेज बनाया गया है। उसमें काफी लड़की नृत्य कर रहें हैं। यहाँ नृत्य देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यह जगह को बहुत अच्छे ढंग से सजाया गया है।

यह एक मैदान है। यह मैदान काफी हरे-भरे हैं। यहाँ बहुत सारे फसल लगाया है। बगल में बहुत बड़े-बड़े बिल्डिंग भी हैं जो देखने में बहुत अच्छे हैं।

यह एक रोड है यह रोड बहुत चौड़े हैं रोड के बगल में एक घर भी है वहाँ एक स्कूटी खड़े हैं एक आदमी कुछ कर रहे हैं।

एक खिलाडी को चोट हुई है यहाँ एक डॉक्टर आए है उस खिलड़िका पैर उप्पर किये मु में मस्त लगाए हुए है वह उस खिलाडी का इलाज कर रहे है |